और ये जमीन पे खड़ा है चार पहिये पे--

मतदान जो है वो देश के लिए बहुत ही ज्यादा मत्वपूर्ण है लोक लोकतांत्रिक राज्य के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मतदान।

यहाँ जैसे की हम देख पा रहै है यह एक बहुत सुंदर घर है।

-- और यहाँ एक तालाब है और दो खुजूर का पेड़ है।

जेली एम कॉम बि कॉम बहुत सारे एजुकेशनल चीज लिखे हुए है और ये एक बहुत बड़े गेट के--

वन मानुस है जो बहुत ही ज्यादा--